अ और एक देखो दुवार हैं गेट है कितने सारे ऊपर का छत भी गिर चुका है कितना--

देखिए यहाँ ओप्पो का ए ओप्पो का एक दुकान है इधर भी एक दुकान में बीच में निकलने के गली--

देखिए यहाँ दुकान है मिठाई का दुकान है कितने अच्छे अच्छे मिठाइया रखी हुए है उधर फ्रिज भी है उधर और--

ये देखिए ग्राउंड है ग्राउंड में बाइक चला रहे है लाइटिंग देखिए कितनी अच्छी तरह किया गया है और स--

आमम डाका वि धाम लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ अ छत्तीसगढ़ का है ये --

दिया है ये खाने में बहुत मजा देगा देखिए सजावट देखिए कितना अच्छा ये सजावट है |--

ये देखिए पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल लिखा हुआ है वहां सब पेट्रोल भराने जाते हैं ये देखिए तो--

लाइटिंग इतना अच्छे तरह से लगा हुआ है लाइटिंग --

गया है समान सभी अच्छे अच्छे दिख रहे है रहे सब --